यह बहुत बड़ा नदी है और इस नदी की बिशेष बात यह है की --

यहाँ की सज़ावत काफ़ी बहतरीन है।

रोहन चाय स्टोर चाय कॉफी --

और कुछ लोग भी है।

और कुछ तो मलाई भी बनी हुई है सफेद सफेद ड्रेस पहनकर।

झरने की तरह गिर रहा है।

आस-पास के घर और पेड़-पौधे का माहौल भी अच्छे हैं।

चलता हुआ सूरज का रौशनी और किरण आता हुआ परछाइयां आता हुआ --

और ये एक पोस्ट ऑफिस है।